देता सीमेंट गेत बहुत सारे घर भी दिख रहे है।

इस चित्र में हमें डेरी पार्लर नजर आ रहा है यहां बहुत सारे पेड़ की नजर आ रहे हैं बहुत साथ ही गाड़ी स्कूटी नजर आ रही--

इस चित्र में हमे स्कूल कॉलेज जैसे बिल्डिंग नजर आ रहे हैं यहाँ बोहोत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं।

मार्शल मैजिक नजर आ रही है यहाँ का कलर --

स्काई ब्लू और येलो से किया गया है।